ये किसी सी.आर.पी.एफ. से सेंटर के जगह पुलिस फोर्स का कोई ग्रुप कमान ग्रुप सेंटर लग रहा है जहाँ पे सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है आगे में उनको बैरिकेटर लगा हुआ है।

किसी सड़क के किनारे सुनसान सड़क दिख रहा है इस पे अ और सड़क के किनारे एक सलीया के कुछ तस्वीर है इसमें सूर्यास्त हो रहा है।

ये किसी सड़क सड़क के किनारे से लिया गया फोटो लग रहा है इसमें गाड़ी आते जाते दिख रहा है घर दिख रहा है शाम का समय है और बिजली का कुछ तार है जो सड़क के ऊपर से जाता हुआ दिख रहा है।

यह किसी हाई सेकेंडरी स्कूल का कैंपस दिख रहा है इसमें आ-भारत का राष्ट्रीय झंडा दिखाई दे रहा है स्कूल बस दिखाई दे रहा है और स्कूल के अंदर कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं और स्कूल का ग्राउंड है।

यह डी_पी_एस स्कूल का बिल्डिंग दिख रहा है।

और अगल बगल में कुछ घर दुकान जैसा दिख रहा है।

और इसमें एक ये कैनवास लगा हुआ है।